यहाँ पर विवो इंफीनिक्स ओप्पो एम.आई सभी प्रकार के मोबाइल मिल जायेगें और यहाँ पर मोबाइल के साथ-साथ मोबाइल के कवर भी मिल जायेगें।

इस दृश्य में हम एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर --

और यह पेट्रोल पम्प के पास एक साईकिल खड़ी हुई है। यह पेट्रोल पम्प सड़क के किनारे है। सड़क में आते जाते लोग पेट्रोल भराते हैं।

इस बिल्डिंग के आस-पास छोटे-छोटे फूल के पौधे लगाये गए हैं और छोटे-छोटे झाड़ीदार पौधे भी लगाये गए हैं जिससे यह दिखने में बहोत अच्छे लगेंगे।